मुस्लिम समाज के लोग का नमाज अदा करने के लिए आते हैं।

मंदिल सुरक्षा में लगे हुए हैं।

मालार्पण किये हुए हैं यह दुकान बहुत ही बड़े हैं यहाँ सभी क्लास के --

दिखता है जो एल्बेस्टर से छावनी किये हुए हैं बगल में दो-चार पेड़ भी हैं जो देखने में बहुत अच्छे --

बालिका विद्यापीठ लिखे हुए हैं यह स्कूल बहुत ही बड़े हैं यहां --

बड़े है इस शोरूम मे बहुत सारा टोटो है यहां टोटो --

काफी अच्छे है यहाँ से लोग ऑटो खरीदते है।